ये चित्र फूड ट्रक बाहर से लिया गया है इस चित्र मे दो पय्या तीन पय्या वाहन दिखाई दे रहा है एक टांगा दिखाई दे रहा है कुछ पुरुष और महिलाए दिखाई दे रहे--

इस चित्र मे चार हम्म चार लोग खड़े दिखाई दे रहे है वे चारों ही महिलाए है उन चारों ने ही--

ये चित्र हम्म हरिशत्र क्षेत्र सोनापुर मेला दो हज़ार उन्नीस के बाहर से लिया गया है मेले मे टेन सफ़ेद और ब्लू कलर का आयोजित किया गया है इस क्षेत्र मे महिलाए और पुरुष अपना अपना काम--

इस चित्र मे भगवान की मूर्तिया दिखाई दे रही है जिसमे लक्ष्मण गणपतीजी लक्ष्मीजी हम्म श्रीराम कृष्ण वगैरा हम्म है।